हेलमेट रखा दिखाई दे रहा है बहोत ही ज्यादा लाइटिंग इस शोरूम में लगी हुई है।

इस चित्र में एक डैम जैसा दिखाई दे रहा है आसपास बहुत से छोटे छोटे पत्थर और हरियाली--

इस चित्र में बहुत सारी कारें खड़ी दिख रही हैं ये चित्र किसी पंडाल के बाहर का--